कवड़ किया हुआ है.

यूको बैंक भी हैं.

ऊसमें कोई छोटे-छोटे बच्चे भी दिख रहे हैं।

मैगी पारले जी

और गुलाबी रंग के फूल लगे हुए हैं।

यह एक चोक की तस्वीर है.

और सामने एक बड़ा सा पॉल है पो--

मार्बल्स लगी हुई है.

है जो की खादी कलर का है--

और उस पे भी एक गाड़ी दिख रही है.

गाडी खड़ी हे जोकि सजावट की हुई हे लाल फूलो से.